पिक्चर एक फर्नीचर के दुकान का है जहाँ हम सोफा देख पा रहे हैं। हमे यहाँ एक जॉइंट सोफा दिख रहा है और दो हमे सिंगल सोफे भी दिखाई दे रहे हैं।

जोकि बहुत ही सुंदर तरीके से सजाकर लगाए गए हैं। आसपास हमे यहाँ और भी पेड़ दिखाई दे रहे हैं। हम यहाँ एक आदमी को भी देख पा रहे--

एक रास्ते का है जहाँ हमे दोनों तरफ कुछ पौधे लगाए हुए दिखाई दे रहे हैं। ये पौधे बहुत ही अच्छे तरीके से लगाए गए हैं।

बहुत ही डिज़ाइन में और हमे यहाँ पर और भी कई तरह के पेड़- पौधे नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर हमे कुछ झूले भी देखने को मिल रहे हैं मानो जैसे यह एक पार्क हो।

हमे ऊपर पर एक वेटिंग मशीन भी दिख रहा है। साथ ही हमे कुछ लॉलीपॉप कुछ ब्रेड और भी अन्य चीजे दिख रही है यहां।

ये झींगे देखने में ताज़ा- ताज़ा लग रहे हैं। और इनका रंग हमे सफ़ेद और कुछ पीला नज़र आ रहा है।

में हमे एक थाल में चावल सब्जी करी दाल और कुछ सलाद देखने को मिल रहे हैं।

एक रेलवे स्टेशन का है जहाँ हमे एक ट्रैन दिखाई दे रही है। ट्रैन नीले रंग की है वही हमे ट्रैन से उतरते व चढ़ते कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं।

छत से दी गई है जहाँ हमे दीवार पर कुछ कपड़े टंगे हुए दिखाई दे रहे है।

इसमे हमें एक नदी देखने को मिल रहा है| दिखने में ये नदी काफी बडा है| वही हम इसके किनारो मे कुछ पेड़ पोधे भी दिखाई दे रहे है।

हमे एक बड़ा सा मैदान देखने को मिल रहा है| इस मैदान में हम छोटे छोटे घास भी देख पा रहे है| यहाँ पर हमे क्रिकेट का पिछ बना हुआ दिखाई दे रहा है।

एक स्टैडियम का है जो की देखने में काफी बड़ा है| हमें यहाँ पर हरे भरे छोटे छोटे घास भी दिखाई दे रहे है।

एक रास्ते के किनारे हमारे देश का झंडा लहराता हुआ नजर आ रहा है।